हमको यहां देखने को मिल रहा है बस स्टैंड जिसमें बस लगा हुआ है तीन-चार बस है एक टेम्पू भी लगा हुआ है ।एक च--

यहां पे देख के लिए मिलेगा डेड सारा मॉल और उसके बाद ढेर सारा आदमी भी है और कुछ पुतला भी रखा हुआ है।

हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक एमआरएफ दुकान सा जिसमें एक कुर्सी रखा हुआ है और एक बाईक भी रखा हुआ है देखने में बहुत सुन्दर है।

बाहर में एक मीटर लगा हुआ है ढेर सारा चप्पल जूता रखा हुआ है ढेर सारा फूल का मतलब बाल्टी रखा हुआ है एक ड़ेक्स टेबुल --